यह एक नदी है यह नदी के किनारे में बहुत से जंगल झाड़ है यह नदी के ऊपर में एक पूल बनाया गया है यह नदी में जानवर सब घांस चर के यह नदी में पानी पीने के लिए भी आते है।

यह एक पेट्रोल पंप है । यह पेट्रोल पंप में डीज़ल और पेट्रोल मिलता है । यह पेट्रोल पंप में बड़े- बड़े टैंकर आते हैं यहाँ पर डीज़ल और पेट्रोल देने के लिए। यहाँ पर लाइन लग जाती है पेट्रोल डीज़ल भराने वालो की ।

यह एक ग्राउंड है यह ग्राउंड में बहुत से बच्चे क्रिकेट फुटबॉल कब्बड्डी जैसी चीज़े यह फुटबॉल --